और सारे में बहोत सारा कुहासा है ऊँचा-ऊँचा सब पेड़ है बादल है ।

इसमें शटर लगे हुए हैं ग्रिल लगे हुए हैं जिसमें ताला है।

पतवल गिरे हुए है उप पीछे पानी है ।

अ सारे लोग तरह-तरह के अ --

एक बड़ा सा इंस्टिट्यूट है इसका बड़ा सा फील्ड है।

हाथ में फ़ोन लिए है पैर में शूज पहने हुए है।